बाइक गाड़ी एक कलर में है और गाड़ी के गाड़ी--

और उसमें की कुछ डिजाइन बने हुए हैं गोल-गोल टाइप्स के बने हुए--